इसमें कि हमें एक काले रंग की गाय दिखाई पड़ रही है जो कि अपना खाना खा रही है।

जिसमें कि हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ढेर सारे हरे-भरे मिरचे पड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें सुबह का दृश्य दिखाई दे रहा है नीला आसमान दिख रहा है एक इमारत दिखाई दे रही है।

एक नया बनता हुआ घर हमें दिखाई दे रहा है।

जिसमें कि हमें एक घर के अंदर बंधी एक सफेद एवं काले रंग की सुंदर गाय दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे ]>हमें सुबह का दृश्य दिखाई ]>दे रहा है ।

इस तस्वीर मे हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारें ]>पीले रंग की हैं ।

जिसकी दीवारें सफेद रंग की हैं और एक पुतला खड़ा है।

जिसमें हमें एक मछली बाजार दिखाई दे रहा है।

जिसके अंदर ढेर सारे व्यक्ति खड़े हैं और ढेर सारी मछलियां पड़ी हुई है।